सामने मा जी एक इमारत भी छ ये इमारत मा जी कई सारी खिड़की छन कांच छन लग्यां एक पूगणी एक दुकान छ रेलिंग छ मकान छन सामणी मा कुछ।

यक पुंगड़ी एक रोड च रोड मजी कई सारी स्कूटी अर बाइक छन चन्न लगी।